जो चर्च की ओर पूजा करते हुए बहुत सारे आदमी लोग नज़र आ रहे है चर्च बेहद ही अच्छे दिखाई दे रहे है बेहद ही अच्छे से पेंटिंग किए हुए है।

बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है चर्च का और हरे - भरे पेड़ - पोधे भी देखने को मिल रहे है चर्च के आगे --

कोई एक होटल का तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो बहुत ही खुबसुरत नजारा दिखने को मिल रहा हैहोटल का--